शटर के साइड में ये गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ पे सामने ये मिट्टी रेड -रेड दिख रही हैऔर उसके सामने रोड दिख रहा हैं ।

फूलों से बहुत ही अच्छा सजाया गया हैं।

ब्लू स्काईब्लू कलर की कुर्सिया लगी हुई हैं।

ये मॉल है और ये वी -टू मॉल हैं।

और यहाँ पे ए कुल्लड़ रहै हुए है और निचे साइड में एक बकेट रखा है।

टंगे हुए दिख रहै है और सामने बहुत सारे बरनियाँ रखी हुई है जार रखे हुए हैं।

सीढ़ी से चढ़ के यहाँ पे ये लड़की घीसकती हुई यहाँ निचे आ गयी है।

ये सलून जैसा लग रहा है सामने में एक लड़का बैठा हुआ है कुर्सी पे और एक सामने की तरफ एक लड़का बाल काट रहा है एक छोटे लड़के के--

वाइट कलर का और रेड कलर और ऑरेंज कलर का दिख रहा है सामने तीन खम्बे दिख रहे है और ये डिजाइन बनी हुई हैं ।